कुछ कत्थक कें कर रहे हैं| पीछे भगवान शिव का तस्वीर लगी है जो कि भगवान से बहुत ही अच्छे लग रहे दिखने में | आगे लड़कियां लोग नाच कर रही है हरा फर्श--

कोई ऑफिस वटाइप का जगह है अच्छा है सुंदर है।

बहुत सारे लोग आये है फूल खरीदने को । लाल हरे पीले गुलाबी सब फूल है। गेंदे फूल गुलाब फूल झूहीँ फूल । बहुत सारे लोग है जो बेकर बेच रहे है खरीद रहे है।

दो बन्दे हैं जो के मोबाइल देख रहे हैं| पीछे बड़ा-सा लोहे का पर्दा लगा हुआ है दो ऑटो हैं।

यह ऐसा लग रहा है रथ पूजा का कुछ मामला चल रहा है जो की फूल से लदे हुए हैं| आदमी बहुत सारे खड़े हैं।

इस तस्वीर में चार लड़कियां है जो की बहुत ही सुन्दर दिख रही है| वो कला की प्रकृति का नृत्य कर रही है।

जो की पीछे मूर्तियां भी है हरे फर्श पर अपनी नाच दिखा रही है।

लोहा का कुछ एकठो रखा है डण्डा की तरह शेर पिंजरे में है।